पार्क मे है पार्क मे काफी खेलने वाली चीज है जैसे की झूला है फुटबॉल टेनिस जैसे बॉल बढ़िया खेल खेले जाते है जिसके साइड साइड मे पौधे लगाए हुए है जो एक लगातार दिख रहे हैकाफी बढ़िया और काफी अच्छा पार्क और काफी बडा पार्क है पार्क मे बच्चे |]

तालाब के किनारे का फोटो जो भी काफी बढ़िया तालाब तरह दिख रहा है और तराब के किनारे का सराह भी काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। तालाब के साइड पेड़ है पेड़ पेड़ घने जंगल के जैसा दिख रहा है काफी करीब ज्यादा और काफी अच्छा अच्छा पेड़ लगाया हुआ है जो कि काफी बढ़िया और काफी खतरनाक और काफी काफी --

कोई आदमी घर बना रहा है। घर बनाने के बाद पिलर का खड्डा खून के कोई फोटो खिच रहा है ताकि पिलर कितने फिट कितने चौड़ाई कितने ऊंचाई कितने गहराई मतलब बनाया गया है। और पिलर छै आठ पिलर बनाया गया है चार चार करके। और काफी बीच मे भी एक गोल जैसे पिलर है जो कि काफी बढ़िया दिख रहा है। घर --